में के अंदर बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

मॉल के अंदर बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे हैं।

और इस पर एक लाल रंग का कारपेट बिछाया गया है।

इस छवि पर कुछ मूर्तियां नजर आ रही है।

इस छवि पर एक रोड नजर आ रहा है।

बरांडे पर तीन औरतें नजर आ रही हैं।

की तरफ पेड़ पौधे नजर आ रहे है।

इस छवि पर सात लोग नजर आ रहे हैं।

नदी के इस पार घास पुस नजर आ रहे हैं।

नदी के उस पार बहोत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

इस छवि पर एक बड़ा सा एक गेट नजर आ रहा है ।

इस छवि पर एक म्यूजियम दिखाया गया है।

इस छवि पर एक दुकान नजर आ रहा है।

इस छवि पर एक दुकान नजर आ रहा है।

दरवाजे के ऊपर एक पोस्टर नजर आ रहा है।

दो लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

दरवाजे के उस तरफ आदमी नजर आ रहे हैं।

इस छवि पर एक दुकान नजर आ रहा है।

इस छवि पर चार आदमी और दो औरत नजर आ रहे है।

फील्ड पर एक आदमी नजर आ रहा है।